इस बिल्डिंग के एक फ्लोर में एक एक्सिस बैंक का शाखा भी है यहाँ पर एक्सिस बैंक --

बहुत जल्दी ट्रैफिक पुलिस ए प्रोबलम कंट्रोल करेगा रास्ता जाम नहीं होगा फिर से कार जाने लगेगा।

एक बड़ा सा मार्ट भी है यहाँ पर चारों तरफ से दीवारों से घिरा हुआ है।

यह हमारे इलाका का एक चार्ज है ऐ चार्ज बहोत ही बड़ा है इस चार्ज के अंदर बहोत अच्छी से डेकोरेट किया गया है।

ए हमारे इलाका का एक सरकारी दफ्तर है ए आयकर डिपार्टमेंट है।

छोटे-छोटे लोहे के इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है जो --

इस बिल्डिंग में काम को खत्म करने के लिए ढेर सारे वर्कर्स काम कर रहा है।

ये दफ्तर बहुत ही बड़ा है इस --

स्कूल बहुत ही बड़ा है इस स्कूल के अंदर एक सुंदर सा स्टैचू भी है।

ए हमारे इलाका का एक स्टेज है।

ए हमारे इलाका का एक डांस एकेडमी --

सब सब्जेक्ट का बुक मिल जाता है।

यहां पर इंस्टॉलमेंट में भी चीजें मिलता हैं।

यहां पर लोग बहुत अच्छे से छुट्टी मानता है।

इस दफ्तर में एक बहुत बड़ा सा कैलेंडर भी है।